displaying contents using views पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे views teaser के साथ पेज और and साधारण block view
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
पहले views के बारे में सीखते हैं views का उपयोग समान कंटेंट के संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है views को विभिन्न फॉर्मेट्स में प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि
tables lists gallery आदि
यह हमारे कंटेंट को हमारे द्वारा परिभाषित मानदंड के आधार पर select order filter और present कर सकता है views को अनिवार्य रूप से अन्य सॉफ्टवेयर में reports या query results के नाम से जाना जाता है
उदाहरण के लिए यदि आप library में जाकर librarian को निम्नलिखित मानदंडो के साथ books के for के लिए पूछते है 1905 से पहले प्रकाशित लेखक जिनका अंतिम नाम m से शुरू होता है
book जिनमे 100 या उससे अधिक पेज हों और जिसका covers लाल रंग को हो
यह पूछने पर आपको library से बाहर भेजा जायेगा लेकिन drupal में यह views के साथ आसानी से हो सकता है
views को सेट करने के लिए हमारे पास 5 सरल step की प्रक्रिया है views की कार्यगति है अपने display को चुनना अपने format को सेट करना
अपने fields का अंदाजा लगाना filter लागू करना और फिर रिजल्ट्स को sort करना
अब अपनी website को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
साधारण drupal site पर standard views को बनाना सीखते हैं
structure पर click करें और फिर views पर click करें
drupal में कई निर्मित views हैं उदाहरण के लिएcontent view कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए administrator को अनुमति देता है
इसी तरह custom block library files frontpage people recent comments recent content taxonomy terms whos new और whos online
ये सभी views हैं जो कि drupal के साथ आते हैं जिसे हम update या edit कर सकते हैं
पहले हम teasers के साथ एक साधारण पेज बनायेंगे यह हमारे events content type के लिए landing पेज होगा
add new view पर click करें और इसे events sponsored name दें
content of type को all से events में बदलें और sorted by को newest first में
create a page पर click करें display format को unformatted list of teasers में ही छोड दें
यह इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अपने manage display में teaser mode set किया है
create a menu link check करें फिर menu dropdown में main navigation चुनें
यह हमें सभी events को देखने में मदद करेगा जिन्हें हमने अपने site में जोडा है
save and edit पर click करें अब हम screen से access कर सकते हैं जिसका हमने परिचय में उल्लेख किया था
यह screen page को प्रदर्शित करता है जिसका format unformatted list of teasers है
हमें यहाँ किसी भी fields की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने teaser mode को set किया है
filter criteria published events है और sort criteria अवरोही क्रम में प्रकाशन की तिथि है
यदि हम नीचे scroll करें तो हम यहाँ त्वरित प्रिव्यू देख सकते हैं
यदि आपको यह पसंद नहीं है तो यह बदलना आसान है हम उसे अगले tutorial में देखेंगे
अभी के लिए save पर click करें back to site पर click करें
हमारे पास main menu में अपने events की सूची के साथ events नामक नया टैब है
यहाँ भिन्न आकृति और आकार के साथ सभी event logos हैं
हमारे पास event website और event date है
याद रखें कि हम इसे events content type के लिए अपने teaser mode में अपडेट कर सकते हैं यदि हम इसे बदलना चाहते हैं तो
यह हमारे सभी events के लिए landing पेज है
drupal में एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हमारी website की जानकारी block regions या sidebar में रखने की क्षमता है
पहले यदि हम नया event जोड़ते हैं तो हमें प्रत्येक पेज पर sidebar में आना पडेगा जो on है और sidebar अपडेट करें
अब views स्वत: ही हमारे कंटेंट को अपडेट करता है
structure पर click करें और फिर views पर click करें
चूंकि हम यहां वापस a रहे हैं star पर click करके इसे अपने shortcuts में जोडें अब add new view पर click करें
view name में type करें recent events added यह नवीनतम events की सूची है जिसे हमने अपनी site में जोडा था
content of type को all से events में बदलें
create a block चुनें sorted by को newest first ही रखें
block title में type करें: recently added events सिर्फ दिखाने के लिए हमारे पास भिन्न name और टाइटल हो सकते हैं
drupal हमें views के भिन्न styles को बनाने की अनुमति देता है हम 5 items per block के साथ unformatted list of titles को ऐसे ही छोडेंगे
use a pager को check न करें यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने block के नीचे pager numbers मिलेंगे जैसे कि pager तीन में से एक तीन में से दो आदि
save and edit पर click करें अपने प्रिव्यू पर नजर डालें यह हाल ही में जोडे events के titles की सूची प्रदर्शित करता है
यहाँ हम देख सकते हैं कि यह block को प्रदर्शित कर रहा है format unformatted list है fields title fields हैं
और filter criteria उसके प्रकाशित तिथि के अवरोही क्रम में published events है
save पर click करें यह कहीं भी नही दिखेगा क्योंकि हमने अभी तक block को नहीं रखा है
structure और block layout पर click करें sidebar first में block को रखते हैं
place block पर click करें जब हम नीच scroll करेंगे तो हम recent events added नामक block देख सकते हैं place block पर click करें
चूंकि हमने अभी तक blocks के बारे में विस्तार से नही सीखा है तो अभी के लिए हम save पर click करेंगे यह प्रत्येक पेज पर दिखाई देगा हम उसे बाद में edit करेंगे
यह search के बाद क्रम में प्रदर्शित हो रहा है save blocks पर click करें
back to site पर click करें और हमारे पास प्रत्येक पेज में नया block है जो हमें हमारी site पर हाल ही में जुडे events को दर्शाता है
यहाँ इसे फिर से कंफिगर करने की जरूरत नहीं है आप इसे रख सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं और यह हमेशा अपडेट हो जायेगा
अत: यह प्रकाशित तिथि क्रम में अपने events content type का उपयोग करके block view का एक उदाहरण है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
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा views teaser के साथ पेज और साधारण block view
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद